साइड में एक मकान नजर आ रहा हैं चार पांच पिलर खड़े हुए नजर आ रहे हैं मिट्टी का ढेर ईंटों का ढेर पड़ा हुआ हैं।

यहां पर सीडी नजर आ रही है। ग्रीन कलर की लाइट लगी हुई--

सामने में एक मैदान नजर आ रहा है मैदान में कुछ लोग--

इसका फ्लोर काफी अच्छा है इसकी छत काफी अच्छी है।

कोई इंसान खड़ा व्हाइट कलर की ड्रेस में यहां डांस की मुद्राएं कर रहा है हाथ को ऊपर उठाए हुए है एक हाथ को नीचे--

सामने में रोड नजर आ रहा है रोड के किनारे घर नजर आ रहा है वहां बाहर में--

उनके बाउंड्री नजर आ रही है जहां पे मोंटी होती है मोंटी के बीच में दीवार है दीवार पे खिड़की हैं।

टेबल रखा है टेबल पे बहोत सा सामान रखा है दीवार पे कुछ--

बिल्डिंग में दो मंजिला मकान है नीचे पार्किग एरिया है पार्किंग में जो पेंट किया व्हाइट कलर और ब्लू कलर का--

कार वॉश की जाती हैं स्कूटी वॉश की जाती हैं स्कूटी पे अच्छे से इन्होंने थिनर लगा रखा है स्कूटी को धोने के लिए।

यहां सामने में कैबिनेट नजर आ रहा है। उसमें कोई सामान रखा हुआ है।

सामने में एक हॉल है हॉल के सेंटर में बेंच लगा हुआ है उसके इर्द गिर्द में एक ए_सी --